यह एक दुकान का दृश्य है।

रंग बिरंगे केक पड़े हुए हैं।

रेड बुल दिख रहे हैं।

पंखे बहुत सारे दिख रहे हैं।

एक बाइक दिख रहा है।

कंकड़ पत्थल भी देख रहे हैं।

अंदर एक बड़ा सा सीढ़ी नजर आ रहा है।

कंकड़ पत्थल भी नजर आ रहे हैं।

कुछ बैठे हुए दिख रहे हैं।

स्टेटस दिख रहा है।

कंप्यूटर दिख रहा है।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

पंखे नजर आ रहे हैं।

पाइप दिख रहा है।

पर्दे नजर आ रहे हैं।

ऊपर टांगे हुए पोस्टर दिख रहे हैं इनमें कुछ लिखे हुए नजर आ रहे हैं।

एक अंदर कुर्सी दिख रहे हैं।

पर टांगे हुए फूल दिख रहे हैं।

अंदर जाने का गेट दिख रहा है।

इसमें दरवाजे दिख रहे हैं।

बाइक दिख रहे हैं कुछ बाइक पे बैठे हुए दिख रहे हैं।

एक कुंडी लगाई हुए दिख रहे हैं।

बहुत सारे सामान पड़े हुए दिख रहे हैं।

टेबल नजर आ रहे--

व्यक्ति एक दिख रहा है।

बिल्डिंग दिख रहा है।